सामने डिस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है।

एक डस्टबीन भी दिखाई दे रहा है।

जिसने लाल कपड़े पहने हुए है।